इस तस्वीर में एक --

सारे मेहमान आए हुए है।

तस्वीर में एक--

यहां लोग चलते हैं।

खाने का रेस्टोरेंट दिख रहा है।

खड़ी हुई दिख रही है यह समुद्र में--

इस तस्वीर में स्कूल का--

है यह बहोत ब्यूटी फुल है।

आपको एक रिसेप्शन दिखाई दे रही --

इस तस्वीर में--